और किचन में कुछ बर्तन है सामान है बर्तन करे--

घर में गेट बना हुआ है ऊपर जाने के लिए सीढ़ी है सिढ़ी के पास एक आदमी खड़े हैं।

उस पर सामने कुछ कपड़े सूख रहे हैं।

नीचे बाइक लगा हुआ है एक जमीन में--

यह तस्वीर किसी स्टूडेंट का कमरा दिख रहा है जिसमें हर तरफ से टेबल --

बगल में जिस चीज में मछली रखा जाता है वो उसका केस है।

और एक आदमी बैठी हुई है वो मछली बेचने की कोशिश कर रही है।

यह तस्वीर एक दुकान की है सामने एक पोस्टर में--

एक बाल का काम करा रहे हैं एक बाल का काम--

किया डाला हुआ है मशहरी लगाने के लिए टेंटा लगा हुआ है।

इस तस्वीर में एक हॉल दिख रहा है।

हॉल में जो घर लगा हुआ है घर है उसकी खिड़की दिख रही है।

एक बच्चे बगल में बैठे हुए हैं उनके आगे स्टूल लगा हुआ है।

यह तस्वीर यह दुकान यह तस्वीर एक दुकान की है।

जलता हुआ अनार जल रहा है उससे रंगबिरंगे प्रकाश निकल रही है।

एक लड़की खरी हुई है वह लाल रंग का कपड़ा पहनी हुई है।

कुछ बनाना सीख रही है कुछ बनाने का प्रयास कर रही है सभी लड़कियाँ नीले कपड़े में है‌।